यहां पर बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। कुछ बैठे हुए हैं। यहाँ पर साइकिल रखी हुए है। बाइक रखी हुए है। कुछ मछलियां कुछ जानवर वगैरा यहां पे रखे हुए हैं।

यहाँ पर बोहोत सारी महिलाएँ दिखाई दे रही हैं और इनके हाथ में पूजा की थाली वगैरा है और बोहोत सारे फल फ्रूट्स वगैरा --

यहां पर सामने दो व्यक्ति दिखाई दे रहें हैं और यहां पर सिस्टम सामने रखा हुआ है माउस रखा हुआ है यहां पर लाइट की डोरी वगेरा लगी हुई है।

यहाँ पर कुछ टंकी वगेरा भी रखी हुई हैं ऊपर फैन लगा हैलाइट्स लगी हुई हैं और यहाँ पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है। एक पोस्टर भी चिपका हुआ है।

यहाँ पर सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर एक शटर लगी हुई है। ए_टी_एम भी है और ऊपर येलो कलर में बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर सामने कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है एक्टिवा खड़ी हुई है। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरा भी बनी हुई हैं। यहाँ --

यहाँ पर सामने एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक शॉप है और यहाँ पर दराज बनी हुई है और यहाँ पर बोहोत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ टेबल पर पेन कैची रखी हुई है ऊपर फैन लगा हुआ है।